यहां पर एक बिल्डिंग बने हुए दिखाई दे रही है बिल्डिंग है कि गेट लगी हुई दिखाई दे रहे हैं यहां पर बाजू में--

सीरियल लगी हुई है कुछ हरी लगी हुई दिखाई दे रही-- गेट खुला हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

इंकी बाइक में हेलमेट लगा हुआ दिखाई इधर कुछ लोग खिड़की से जानते हो नीचे देखते दिखाई दे रहे है पिछे मे दिखाई दे रहे है। की--

यहां पर एक बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही हैं यहां पर पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर बिजली के खम्भे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर बड़े बड़े गेट लगे हुए दिखाई दे रहे हैं |

यहां पर एक रोड दिखाई दे रहा है रोड के यहां पर कुछ हरियाणवी लगे हुए दिखाई दे रहा है--

यहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही है पीछे।

थोड़ी दूर जाकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही है। यहां पर बिजली के खंवे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

दिखाई दे रही है बैंक का गेट लगा हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर खिड़कियां खुली हुई दिखाई दे रही बाजू की खिड़की बंद दिखाई दे रही है यहां पर --